और उसके पास में एक आदमी खड़ा है।

और जिनपे ग्रिल भी लग रहे हैं।

और इसमें कुछ बच्चों के खेलने के सामान रखे हुए हैं।

यह एक तालाब है और इसके पास में दो नाव खड़ी है।

और उसपे कुछ जानवर उतरे गए है।

और यहां पे कुछ लाइट भी लगी है।

और इनके सामने एक एल_सी_डी भी लग रही है।

और एक काउंटर है और उस पे कुछ फाइल रखी हुई है।

यहां पे दो दुकान बनी हुई है।

और ऊपर कुछ टीन भी लग रहा है।

और उनमें कुछ फल रखे हैं।

यहां पे एक बैंगनी कलर की मैट बिछी हुई है।

और उसमें एक पानी का झरना चल रहा है।